लिबर ऑफिस राइटर में हैडर्स फुटर्स और एंडनोट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि160 डॉक्युमेंट में हैडर्स कैसे प्रविष्ट करें
डॉक्युमेंट में फूटर्स कैसे प्रविष्ट करें
पहले पेज से हैडर्स कैसे हटाएँ
डॉक्युमेंट में फुटनोट और एंडनोट कैसे प्रविष्ट करें
यहाँ हम GNUलिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
लिबरऑफिस आपको डॉक्युमेंट में पेज संख्या जोड़ने की अनुमति देता है
हम अपनी resumeओडीटी फाइल खोलेंगे
फुटर में पेज नम्बर्स प्रविष्ट करने के लिए हम पहले पेज पर क्लिक करेंगे जहाँ हम फुटर प्रविष्ट करना चाहते हैं
अतः डॉक्युमेंट पेज पर क्लिक करें
अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फूटर ऑप्शन पर क्लिक करें
अब डिफॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि फुटर पेज के सबसे नीचे भाग में जुड़ गया है
फुटर में पेज नम्बर प्रदर्शित करने के लिए हम पहले इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
आप देख सकते हैं कि यहाँ कई फुटर ऑप्शन्स प्रदर्शित हैं
तुरंत ही हम देखते हैं कि फुटर में नम्बर 1 प्रदर्शित होता है
भिन्न शैलियों में पेज नम्बर देने के लिए पेज नंबर पर डबल क्लिक करें
हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एडिट Fields डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
फॉर्मेट ऑप्शन के नीचे आप कई प्रारूप देखेंगे जैसे आ ब सी बडे अक्षरों में आ ब सी छोटे अक्षर मेंArabic 1 2 3 और कई
यहाँ आप पेज नम्बर की शैली चुन सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं
हम रोमन iiiआईआईआई ऑप्शन चुनेंगे और फिर ओक बटन पर क्लिक करेंगे
आप देखते हैं कि पेज में नम्बर का प्रारूप बदलता है
उसी तरह हम डॉक्युमेंट में हैडर प्रविष्ट कर सकते हैं
पहले पेज पर क्लिक करें जहाँ हैडर प्रविष्ट होना चाहिए
इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर हेडर ऑप्शन पर क्लिक करें
डिफॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि हैडर सबसे ऊपर पेज में प्रविष्ट हो गया है
हैडर में दिनाँक प्रविष्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर फील्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करें
साइड मेन्यू में जो प्रदर्शित है डेट ऑप्शन पर क्लिक करें
दिनाँक हैडर में प्रदर्शित होती है
डेट पर डबल क्लिक करके सभी संभव प्रारूप दिखते हैं जिनमें दिनाँक प्रदर्शित हो सकती है
यहाँ हम 31 डीईसी 1999 चुनेंगे और ओक पर क्लिक करेंगे
अब मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर पेज प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करें
डॉक्युमेंट को 50 तक जूम करें
तो हम पेज में सबसे ऊपर पर डेट देख सकते हैं और सबसे नीचे पेज नम्बर
यह डॉक्युमेंट के सभी पेजों पर दोहराया जायेगा
मूल डॉक्युमेंट में वापस जाने के लिए क्लोज प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें
आप हैडर या फुटर ढाँचे से संबंधित टेक्स्ट के स्पेस को व्यवस्थित भी कर सकते हैं
या हैडर या फुटर में बॉर्डर लागू कर सकते हैं
मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पेज पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स में फूटर टैब चुनें
स्पेसिंग ऑप्शन को सेट करें जिसका उपयोग आप लेफ्ट मार्जिन की वेल्यू 100सीएम तक सेट करके करना चाहते हैं
फुटर में बॉर्डर या शैडो जोड़ने के लिए पहले मोरे ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑप्शन्स की वेल्यू सेट करें जिसे आप फुटर में रखना चाहते हैं
उदाहरणस्वरूप फुटर में शैडो शैली डालने के लिए हम कास्ट शैडो टो टॉप राइट आइकन पर क्लिक करते हैं
आप हैडर का कलर और शैडो भी चुन सकते हैं
प्रत्येक उपलब्ध ऑप्शन्स के बारे में अधिक जानने के लिए इस डायलॉग बॉक्स का अन्वेषण करें
अब ओक पर क्लिक करें
फिर से ओक पर क्लिक करें और हम देखते हैं कि फुटर में प्रभाव जुड़ गया है
यह इंसर्ट जीटीजीटी मैनुअल ब्रेक क्लिक करके और पेज ब्रेक ऑप्शन चुनकर किया जाता है
फिर ओक पर क्लिक करें
ध्यान दें कि पेज नम्बर 2 प्रदर्शित होता है
यदि आप डॉक्युमेंट के पहले पेज पर फुटर नहीं चाहते हैं तो पहले पहले पेज पर कर्सर रखें
फिर मेन्यू बार में फॉर्मेट पर क्लिक करें और स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें
अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर चौथे आइकन पर क्लिक करें जो कि पेज स्टाइल्स है
फिर फर्स्ट पेज ऑप्शन पर राइट क्लिक करें
न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आर्गेनाइजर टैब पर क्लिक करें
000525 000429 नामे फील्ड में हम नयी शैली का नाम टाइप कर सकते हैं जिसे हम प्रविष्ट करना चाहते हैं
अतः यहाँ हम न्यू फर्स्ट पेज नाम टाइप करेंगे
नेक्स्ट स्टाइल डिफॉल्ट के रूप में सेट करें
अब डायलॉग बॉक्स में फूटर टैब पर क्लिक करें
फूटर ओन चेकबॉक्स को अनचेक करें यदि यह डिफॉल्ट से अनचेक नहीं होता है
अंततःOK बटन पर क्लिक करें
हम वापस स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स पर आ गये हैं
ध्यान दें कि न्यू फर्स्ट पेज शैली पेज स्टाइल्स ऑप्शन के नीचे दिखाई देती है
अबnew फर्स्ट पेज पर डबल क्लिक करें
आप देखते हैं कि यहाँ पहले पेज को छोड़कर डॉक्युमेंट के सभी पेजों पर फुटर है
वैसे ही आप सभी उपलब्ध डिफॉल्ट शैली पर बदलाव कर सकते हैं और इनको डॉक्युमेंट के प्रत्येक पेज पर लागू कर सकते हैं
डायलॉग बॉक्स को बंद करें
अब लिबरऑफिस में फुटनोट्स और एंडनोट्स के बारे में सीखते हैं
फुटनोट्स पेज में सबसे नीचे दिखाई देते हैं जिसमें वे उल्लेखित होते हैं
जबकि एंडनोट्स डॉक्युमेंट के अंत में एकत्र होते हैं
नोट के लिए एंकर वर्तमान कर्सर की अवस्था पर प्रविष्ट होते हैं
आप ऑटोमेटिक नंबरिंग या आ कस्टम सिम्बोल के मध्य चुन सकते हैं
इस ऑप्शन पर जाने के लिए पहले मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
फिर footnoteएंडनोट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि नंबरिंग और टाइप नामक हैडिंग्स के साथ स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
यहाँAutomatic कैरेक्टर फुटनोट और एंडनोट नामक चेकबॉक्सेस हैं
नंबरिंग आपको नम्बर के प्रकार को चुनने की अनुमति देता है जिसे आप फुटनोट्स और एंडनोट्स के लिए उपयोग करना चाहते हैं
ऑटोमेटिक ऑप्शन स्वतः ही फुटनोट्स या एंडनोट्स में क्रमानुगत नम्बर्स निर्दिष्ट करता है जिसे आप प्रविष्ट करते हैं
डायलॉग बॉक्स बंद करें
स्वतः नम्बरिंग के लिए सेटिंग बदलने के लिए मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
और फिर footnotesएंडनोट्स पर क्लिक करें
आपके पास ऑटोनंबरिंग और स्टाइल्स के लिए स्वचलित विकल्प सेटिंग है
अपनी आवश्यकता के अनुसार इन ऑप्शन्स में से चुनें और ओक बटन पर क्लिक करें
इंसर्ट और footnoteएंडनोट ऑप्शन पर वापस जाएँ
कैरेक्टर ऑप्शन का उपयोग वर्तमान फुटनोट के लिए अक्षर या चिन्ह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है
यह अक्षर या तो नम्बर हो सकता है
एक विशिष्ट अक्षर निर्दिष्ट करने के लिए कैरेक्टर फील्ड के नीचे के बटन पर क्लिक करें
अब किसी भी विशिष्ट अक्षर पर क्लिक करें जिसे आप प्रविष्ट करना चाहते हैं और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
अपनी पसंद को स्पष्ट करने के लिए टाइप हैडिंग के नीचे फुटनोट या तो एंडनोट ऑप्शन पर क्लिक करें
अतः हम नंबरिंग के नीचे ऑटोमेटिक और टाइप के नीचे फुटनोट चुनेंगे
अब ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि फुटनोट फील्ड डिफॉल्ट रूप से संख्यात्मक वेल्यू के साथ पेज में सबसे नीचे दिखाई देता है
आप फुटनोट फील्ड में थिस इस थे इंड ओएफ फर्स्ट पेज टेक्स्ट लिख सकते हैं
और फिर कीबोर्ड पर Enter बटन दबाएँ
आप पेज के तल पर टेक्स्ट के साथ आवश्यक फुटनोट देख सकते हैं
अन्यथा आप डॉक्युमेंट के तल पर एक एंडनोट प्रविष्ट कर सकते हैं
अब हम लिबरऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा डॉक्युमेंट्स में हैडर्स कैसे प्रविष्ट करें
डॉक्युमेंट्स में फुटर्स कैसे प्रविष्ट करें
पहले पेज से हैडर्स कैसे हटाएँ
डॉक्युमेंट्स में फुटनोट और एंडनोट कैसे प्रविष्ट करें
व्यापक नियत कार्य
practiceओडीटी फाइल खोलें
डॉक्युमेंट में हैडर और फुटर जोड़ें
हैडर में ऑथर नाम प्रविष्ट करें
फुटर में पेज काउंट प्रविष्ट करें
एक एंडनोट जोड़ें जहाँ पेज समाप्त होता है
डॉक्युमेंट के पहले पेज से हैडर हटाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैन्ड्विड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट at स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें